चित्र में मुझे एक व्यक्ति मोबाइल लिए हुए--

चित्र में मुझे एक व्यक्ति हाथ में हेलमेट लिए दिख रहा है।

कई सारी नर्सरी पे रखे हुए पौधे छोटे छोटे दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे पेड़ों पर लगी हुई लाइटिंग्स दिख रही है।

टेबल पर कुर्सी पे बैठे हुए खाते दिख रहे हैं।

पॉलिथीन पर बना हुआ डॉग दिख रहा है चित्र में मुझे ऊपर से --